यहाॅं पर चार- पाँच लोग खड़े हुए हैं ऑ एक अंकल ए_टी_एम मेल से पैसे निकाल रहे हैं।

ईंट का घर है। घर के अंदर बाइक रखी हुई है। नीम का पेड है आस-पास बोहोत सारे पेड --